और भी जेनरल स्टोर की दुकान कपड़ो की ये बड़ा सा मार्किट है जिसके सामने एक दुकान है जिस पर मेडिकल के किसी व्यक्ति के इलाज के लिए दवाइयां मिलती है।

यह एक चर्च है| ओर यह पर कोई भी नहीं है| फादर भी नहीं है| चर्च काफी खाला है ।.

ये है एक बड़ा सा कैफ़े है कैफ़े मे बहुत सारे केक रखे हुए है जोकि काफी बड़े-बड़े है।

खेत पर कुछ बांस के डंडों मे लाइटिंग लगी हुई हैं। खेत मे हरी कलर का बीज बोया हुआ है और पास मे ही एक डीपी है और घर भी है।

और ग्रीन कलर का पैंट पूता हुआ है।

ये एक पेरेस है| यहाँ पर शादी चल रही है| कुछ व्यक्ति आए हुए है बारात लग रही है| और यहाँ पर डेकोरेशन काफी अच्छा है| ग्रीन और ऑरेंज कलर के परदे लगे हुए है| वाइट कलर के गमले है जो की काफी अच्छे और न्यू है।

इसका कलर भी पिंक कलर है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है| और जिम का कलर व्हाइट कलर है|

यह एक रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन काफी खाली है और यहाँ पर बहुत सारी पटरियाँ हैं और पटरी रेलवे स्टेशन -के आस पास एक बड़ा सा एरिया है यहाँ पर बहुत होत सारे घर है।

और यहा पे बहुत सारी खिड़कीया है जोकी अच्छी है। और क खम्भे भी बहुत सारे है जोकी अच्छे है ।

पेड़-पौधे है जैसे कि हिरने है और पेड़-पौधे भी है और ग्राउंड की तरह भी है जो की अच्छा है।